तो आप देख सकते है इस मंदिर का रास्ता दिखाई दे रहा है।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है उसके अंदर एक आदमी है जो की--

जीप सी खड़ी हुई है एक कार खड़ी हुई है व्हाइट कलर की है और जो जीप है वो ग्रे कलर की है और एक दरवाजा भी नजर आ रहा है।

एक आदमी वहाँ पे टहलता हुआ दिख रहा है उसके सामने एक बिल्डिंग भी बनी हुई है आस पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर जो है वो एक--

ये जो आप चित्र देख रहे है उसके अंदर एक पार्क बना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगाए गए है।

हरे भरे यहाँ पर पेड़ है बौंड़री बनी हुई है ब्लैक कलर से--

की बिल्डिंग भी बनी हुई है यहाँ पर कुछ आपको दो ए_सी भी लगे हुए दिख रहे है और एक आदमी जो की यहाँ का वॉचमन है वो खड़ा हुआ दिख रहा है उसकी ड्रेस मे--

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर सभी लोग एक्सर्साइज़ कर रहे है और वो उलटा हो रहे है अपने हाथ के बल--

और स्पेशल यहाँ पे दो मिनिटस् मे बनने वाली मॅगी भी टंगी है इसके ऊपर लिखा हुआ है टू मिनिट्स --

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर जो है एक मैदान पड़ा हुआ है घास का--

ये जो आप एक चित्र देख रहे है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनटैक्ट नंबर एट एट वन वन नाइन फाइव फाइव वन ज़ीरो टू --

और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी शॉपे भी है उसके सामने बहुत सारी जो है वो बाइक्स भी खड़ी हुई है।

कुछ आदमी यहाँ पर दिख रहे है बाइक पर और ये लोग सब वहाँ बैठे हुए है।

किराने की शॉप वहाँ पे बहुत सारा सामान टंगा हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पे होल्डिंग लगा हुआ है आशीर्वाद--

किराना और इसका नाम है आशीष किराना--

अंदर खजा बना के रखा है उसके अंदर बहुत सारी गाय खड़ी हुई है एक मैदान जैसा पड़ा हुआ है।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर आप देख सकते है एक शॉप का है जहां पे --

और यहाँ पर जो है वो एक शॉप है वहाँ पे बहुत सारा जो है वो आपको रखा हुआ प्रायजेस की लिस्ट भी दिख जाएगी।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर हरी और व्हाइट कलर की एक बिल्डिंग नजर आ रही है आस पास जो है वो--

कुछ अपना काम कर रहे है यहाँ पर देख सकते है ये अलग अलग नंबर्स है इनके इनकी कोई जिम चल रही है या फिर ये लायब्ररी के अंदर बैठे हुए है।

जो की शायद सरकारी बिल्डिंग है और इसके सामने से कुछ लोग भी आते जाते दिख रहे है एक किसी का स्टैचू भी बना हुआ है।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर बहुत सारे लोग जा रहे है और पेड़ लगे हुए है हरे भरे--

और कई लोग आते जाते इस रास्ते से दिख रहे है कुछ जला हुआ है आस पास मे।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर एक रूम बना हुआ है एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है ए_सी भी लगा है पंखा भी है दो लाईटे भी दिख रही है।

पेड़ भी लगे हुए है और ये दो लड़के आते जाते हुए हमे दिखाई दे रहे है वो नजर आ रहे है।